जो नीले रंग की है यहाँ पे पंखे भी लगे हुए है यहां लाइट भी बहुत है यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

आसपास बहुत सी ईटे पत्थर हैं यहाँ पे सफेद रंग का भी घर है आसमान नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे छोटी-छोटी घांस भी उगी हुई है यहाँ पे आसमान नीले रंग का है यहाँ पे एक कुआँ भी बना हुआ है।

टॉफी भी हैं यहा पे झाड़ू की एक टब भी रखा हुआ है पास मे एक बालटी है यहा पे एक पेड़ है बहोत से लोग खड़े हुवे है ।

यहाँ पे एक घर बना है जो हरे व सफेद रंग का है यहाँ पे एक पंखा लगा है यहाँ पे एक दरवाजा है जो लकड़ी का है।

यह एक होटल है जिसका नाम प्रकाश है यहाँ पे एक बाइक है यहाँ पे एक और भी बाइक खड़ी है यहाँ पे एक ब मोट कार भी है।

यह एक घर है जो छोटा सा है यहां पे बहुत से घर बन हुए है यहां पे पहाड़ी क्षेत्र भी है इसपे बहुत सी घास उगी हुई है यहां पे नीले रंग का घर है जिसपे पानी की टंकी है।

ये एक गेस्ट हाउस है यहाँ पे एक सोफे पड़ा है आस-पास गुलदस्ते रखे हैं यहाँ पे झूमर लगे हैं यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो काफी बड़ी है यहां पे एक पेड़ है जिसपे एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे लोहे का गेट लगा है।

यह एक गुफा लग रही है जो काफी बड़ी है यहाँ पे एक आदमी इसके अंदर जा रहा है यहाँ पे एक बेंच भी पड़ी है जो लोहे की है।